मुझे इस फोटो में सड़क दिख रही है मुझे इस फो--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

मुझे इस फोटो में ट्यूबलाइट दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो मे कंप्यूटर दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो --

मुझे इस फोटो में घर दिखाई दे रहा है।

बोहोत बड़ा ट्रक दिखाई दे रहा है।